रखी हुई हैंएक बिजली का खंबा भी दिखाई दे रहा है एक व्हाइट कलर की कार रखी हुई है पास मे ही दो तीन व्यक्ति खड़े हुए है।

कुछ हरे-भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है कुछ बेंच रखे हुए है जिनका कलर ब्लैक है।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

बहुत सारी व्हाइट कलर की बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है कुछ बड़े -बड़े हरे -हरे पेड़- पौधे भी दिखाई दे रहे है और कुछ बहुत सारे लोग इधर -उधर जा रहे हैं।

बोहोत सारी औरतें खड़ी हुई है और एक आदमी बैठा हुआ है जिसनें वाइट कलर के कपड़े पहने हुए है एक लड़की खड़ी हुई है जिस--

--गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे है है बहोत सारे बच्चों ने ब्लैक और वाइट कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है।